और यह एल_इ_डी लाइट काफी तरह तरह की डिजाइंस की है।

जिसमें कि हमें बनाना पपाया औरेंज एप्पल और ब्लैक ग्रैप्स ग्रीन ग्रैप्स नज़र आ रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे है यहां पर।

और दोनों बिल्डिंग्स के ऊपर से तार भी निकलती हुई नजर आ रही हैं।

सामने की तरफ कुछ देखने की कोशिश कर रहा है।

और उसके अंदर हमें एक बेडरूम नजर आ रहा है।

और एक बुके और एक फैन भी दिख रहा है।

यहां पर हमें एक गैरेज नजर आ रहा है जिसमें की एक कार खड़ी हुई है।

यहां एक हमें शॉप नजर आ रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है लुनिया एंड कंपनी का

इस मशीन के ऊपर की तरफ ऑरेंज कलर के सिंदूर से शुभ और लाभ लिखा हुआ है।

यहां पर पूरा सामान लोहे का ही रखा हुआ है।

तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिसमें से दो मेल है और एक फीमेल नजर आ रहे हैं और यह--

और यहाँ कुछ लोग भी घूम रहे है।

यहां पर हमें एक मेडिकल शॉप दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं।

जिसका की कलर गोल्डन कलर का है।

बैंक के अंदर भी हमे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं बैंक के बाहर दो बाइक दिखाई दे रही हैं।

जिसमें की दो लोग यहां पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हिस इमेज में हमें बहोत ही सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा हैं जिसमें की हरी भरी घा--

और वह कुछ बताने का प्रयास कर रहे है।

इस इमेज में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।